यह गुफा जैसा बनाया गया है अंदर कुछ समान रखे गए हैं ।

इधर हरे भरे में कुछ रेड कलर का लगा है काफी देखकर अच्छा लग रहा--

बाल काट रहा है और मास्क लगाया हुआ है और कुछ बाल सीधा करने की मशीन भी है मोबाइल से फोटो खिंच रहा है।